एक बोहोत बड़ा वो दिख रहा है बिल्डिंग एंड बोहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं। एक साइकिल भी खड़ी हुई है। बोहोत सारे जैंट्स भी दिख रहे हैं ग्राउंड में खड़े हुए। बोहोत ही सारे हैं। आसमान भी दिख रहा है।

यहां पे हरे कलर के बहुत सारे भुट्टे दिख रहे हैं जो हल अ हल्के हल्के छिलके निकले हुए हैं एंड बहुत सारी यहां पर पतली-पतली लकड़ियां पड़ी हुई हैं।

ये एक पिंजरा दिख रहा है पिंजरे के अंदर दो चिड़ियाॅं दिख रही हैं एंड पेड़ भी दिख रहे हैं एंड बहोत सारा वो भी डाला हुआ है इनका खाना और एक जेंट्स भी दिख रहे है।